यहाँ पर एक रोड है जिसके बाजू में एक दुकान बनी हुई है दुकान की शटर का रंग कथ्याई हैं।

और बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जो नीले और नारंगी रंग का है दुकान के बाहर भी एक कुर्सी रखी है जो सफेद रंग की है और दुकान के बाहर और अन्दर बहुत सी सामग्री र--

यहाँ पर एक सड़क हैं जिसके आजू - बाजू बहुत सारी इमारते बनी हुई हैं और इमारतों पर बहुत सारे पोस्टर भी लगे हुए हैं।

तालाब के किनारे मे ए सीढ़िया भी बनी हुई हैं और उसी के सामने एक मकान भी बना हैं।

--जो लोहे का बना हुआ है मकान के बाहर बहुत सारे बाहन भी खड़े हुए है और मकान के उपर एक पोस्टर भी लगा हुआ है जो हरे और सफ़ेद रंग का है।

--जो सफ़ेद रंग का है और आसमान भी है जो नीले रंग का दिखाई दे रहा है और ईमारत के बाहर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़-पौधे भी लगे हुए है।

--और उन गमलो मे छोटे छोटे हरे हरे पेड़-पौधे भी लग रहे है और सामने एक बहान भी खड़ा हुआ है।